उसके अंदर कई व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक ऑफिस के जैसा दृश्य दिखाई दे रहा है साइड में ये --

आगे कई सारे पंते दिख रहे हैं ऊपर से छत खुली दिख रही है।

सामने एक गार्डन के जैसा दृश्य दिखाई दे रहा है।

सामने एक व्यक्ति पैर ऊपर करके लेटा हुआ है।

सामने एक पानी का भरा हुआ तालाब--

सामने एक राशन की दुकान के जैसा कुछ दिखाई दे रहा है।

कई प्रकार के खेलने के समान दिखाई दे रहे है।

मतलब खड़ी है कई लाइटे जलती हुई दिखाई दे रही है।

सामने कुछ जिम का जैसा दृश्य दिखाई दे रहा है।

एक्सरसाइज करती दिखाई दे रही है कई गुब्बारे लगे हुए हैं।